यह एक श्री जानकी मंदिर है इस पर एक गेट लगा हुआ है गेट ओपन --

अन्दर की ओर मंदिर है तथा आस पास घर बने हुऐ है मंदिर की दिवार के पास एक बगीचा बागवानी बनी हुई है जिसके आस पास बाउन्ड्री --

एक रिवर है जिसके किनारे पर बहुत सारे घर बने हुए हैतथा थोड़ी दूर पर टावर बने हुए है टावर से होकर बहुत-सारी वायर इधर-उधर जा रहे है।

यह एक बजरंग बली का मंदिर है जहां बजरंग बली को पोशाक पहनाई गई है तथा पीछे एक चुनरी ओढ़ायी गई है सिर पर मुकुट गले में माला पहने सुजोभित लग रहे हैं।

साइड में दो व्यक्ति खड़े हैं तथा पीछे के साइड में एक बिजली का टावर लगा हुआ है आस-पास पेड़-पौधे लगे हुए हैं मंदिर के सामने बगीचा है।